यह एक हाल दिखाई दे रहा है। हॉल में सोफा --

दे रहा है। बैंक के दीवारों पर दो खिड़कियां बनी हुई हैं जो --

कुछ लोग आपस में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साइड में कुछ आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक बड़ी सी खिड़की बनी हुई दिखाई दे रही है। खिड़की का गेट बंद दिखाई दे रहा है।

पत्थर डले हुए दिखाई --

यह एक दुकान दिखाई दे रही है। दुकान के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है। दुकान के अंदर बहुत सारा सामान बोरियों में रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

कार को पॉलीथिन से पैक कर के रखा हुआ दिखाई दे रहा है। कार के सामने एक आदमी खड़ा हुआ है।

दे रहा है. साइड में एक आदमी बेठा हुआ दिखाई दे रहा है।

पार्लर सा दिखाई दे रहा है जिसमें एक औरत का पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

अंदर बोहोत सारा सामान डला हुआ दिखाई दे रहा है। एक टंकी रखी हुई दिखाई दे रही है।

बहौत सारी औरतें खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं जो सामान लेते हुए नजर आ रही हैं।

कुछ लड़के दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामने एक मैदान दिखाई दे रहा है।

यह एक पार्लर दिखाई दे रहा है। पार्लर में बोहोत सारी कुर्सी रखी हुई दिखाई दे रही हैं। कुर्सी के ऊपर टॉवल